हरे हरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है नीचे नदी है।

एक किचन में फल रखे हैं माइक्रोवेव है।

पेड़ है इस नदी में बहोत सारी झील है और सांप भी है।

जहाँ पर कुछ आदमी योगा करते हैं पीछे एक बड़ा सा शीशा है।

मंदिर में आने से मन को शांति मिलती हैं।

यहां पर एक बड़ी सी नदी है बहुत सारी घास है।

पीकर और कांटे के पेड़ है।

यह एक बहोत ही सुंदर इंस्टिट्यूट है।

बहोत बड़े बड़े गुब्बारे हैं।

हरी भरी गाड़ी है पंखे हैं ए_सी है।